भैया एक सीडी पर खड़े हुए है और एक छोटे किराने की दुकान है।

खंबे लगे हुए है जिस पर झंडे लगे हुए है झंडे का कलर ब्लू और ऑरेंज है और पेट्रोल पम्प चालू है का बैनर भी लगा--